इमेज में सारे बहुत सारे लोग खड़े हुए है एक पुलिस वाले खड़े हुए है दो तीन पुलिस वाले खड़े हुए है दो कार तिन चार कार खड़ी हुई है।